यह तस्वीर एक फिश मार्केट की तस्वीर है। यह पर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है। कुछ महिलाएं कुछ पुरुष भी है।

पेंटिंग बने हुए है आस-पास बड़ी बड़ी जालियाँ नजर आ रही है।

चर्चा में पीछे में एक क्रॉस लटका है वहाँ बहुत सारे पंखे चल रहे है चर्च का कलर वाइट कलर किये है।

शाम के समय अंधेर छाया हुआ है बिजली के वायर आसमान पे से लटकते हुए देख सकते है यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स लगी हुई है।

यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है कुछ महिलायें भी है भगवान जी का रथ यात्रा हो रहा है पीछे भी बहुत--

यह तस्वीर किसी चर्च के बाहर की तस्वीर है। जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति खड़े है। जिसमे कुछ महिलाएं कुछ पुरुष भी है। चर्च में बहुत सारे बलून --

यहाँ पर का कसकसंग कार्य चल रहा है जहाँ ये व्यक्ति ड्रिलमशीन लेके जमीन को पहाड़ रहा है यहाँ पे बोहोत सारे कंस्ट्रक्शन के समान भी पड़े हुए है दिन का समय है उजाला आ रहा है यहाँ पर मकान---